उसके वहां पे उनके घर भी रखे हुए हैं।

इस फोटो में मुझे एक मस्जिद दिख रही है और सामने ग्राउंड में कुर्सी रखी हुई है।

और आ कोने में सबसे प से पराठा नाम की दुकान भी है।

बाजू में एक पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पे एक आन्टी गोल्ड खरीद रही है और--

बहोत बड़े बड़े पेड़ भी विशाल विशाल पेड़ भी दिख रहे है।

यह किसी बैंक की फोटो है जहां टेबल पर एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है और कुर्सी पर--